यहाँ बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

चार महिलाए खड़ी हुई हैं जिन्होंने एक ही कलर का ड्रेस पहना है सफेद कलर --

चादर जैसा दिखाई दे रहे है जहा काफी लोगो ने स्केटिंग की हुई है।

अंदर की ओर कुछ और बच्चे जाते हुए --

की बहुत अच्छे लग रहे हैं हरे-भरे हैं ।

बहोत सारे यात्री गण दिखाई दे रहे हैं जो कि स्टेशन पर बैठे हुए हैं ।

किसमिस दिख रही है पिस्ता दिख रहा है ।

गाजर दिखाई दे रही है हरी मिर्ची दिखाई दे रही है ।

अंदर बहुत सारी बुक्स भी रखी है।

हई व्यक्ति बुक्स खरीद रहा है।

एक व्यक्ति गाड़ी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा हे।